और पहाड़ का भी लुक ही मस्त और अच्छा दिखता है।

और यहाँ क्रिकेट होती है अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आकर यहाँ टूर्नामेंट वगैरा खेलते हैं।

यह इक मॉल का है और काफी अच्छी और बेहतरीन ड्रेसीस --

ये कोई लैब का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ढ़ेर सारी फैसिलिटी है।

जो हेयर कटिंग का काफी बेहतरीन और --